दिखाए गए चित्र में एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई दी गई है।

दिखाई गई छवि में एक बड़ा सा ट्रक दिखाया गया है।

एवं उसके आसपास करकटो से घेरा दिया गया है।

दिखाए गए छवि में एक छोटे से दुकान का इंटरनल भाग दिखाया गया है।

उन सभी डब्बे को का रंग विभिन्न विभिन्न है।

बहुत सारे मनोरंजन के समान एवं मशीने दिखाई दे रही है।

दिखाई गई छवि में एक खूबसूरत सा झरना दिखाई दे रहा है।

चार पहिये वाहन के गाड़ी के पास कुछ पुलिस कर्मी भी खड़े हैं।

इमारत के बाहर हॉस्पिटल लिखा गया है एवं उसे गुलाबी रंग से रंग रंगा गया है।

यहां के पास एक दो पहिया वाहन गाड़ी भी दिखाई दे रही--

उसने अपने हाथ में पेंट ब्रश पकड़ा हुआ है।

डंडे के अंदर बहुत सारे लोहे के सलाखें भी डाले--

दिखाए गए छवि में एक झूला दिखाया गया है।

एक बच्चा जंजीरों को पकड़े हुए--

दो काउंटर भी दिखाई दे रहा है जिस पर दो प्रिंटर भी रखा है।

दिखाई गई छवि में दो बड़े बड़े अलमारियां दिखाई गईं हैं।

दिखाई गई छवि में एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया गया है।

उसका रंग सफेद है एवं कुछ पर फूलों की आकृति भी बनाई गई है।

दुकान के बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है जिसमें डॉगी ओयो दिखाई लिखा गया है।

दुकान के बाहर एक दो पहिया बाहर गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

जीम के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

एवम् कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति बड़े सा आईना के पास खड़ा है जिसने भूरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

कुछि दुरी पे एक बड़ा सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति अपने हाथ में थाली लेकर बैठा हुआ है।

कमरे का छोटे से हिस्से में कोई सेल्फ बनाए गए हैं।

दुकान के अंदर एक छोटा सा काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

कमरे के सीलिंग को सफेद रंग से रंगा गया है।

दिखाए गए छवि में एक थोड़ा सा खोलना मैदान दिखाया गया है।

पोस्टर पे लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल गढ़वा लिखा गया है।

पीछे दूर पर एक शांत रोड भी दिखाई दे रहा है।

इमारत के बाहर एक काले रंग का चार पहिया वाहन गाड़ी एवं एक दो पहिया वाहन गाड़ी एवं एक साइकिल भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर एक बड़ा सा साइड बोर्ड लगाया गया--

कुछी दूर पर एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जिसके दीवारों को शीशे से बनाया गया है।

पोस्टर के नीचे एक छोटा सा दुकान भी दिखाई दे रहा है।

एक लड़के ने लाल रंग का शर्ट एवं अन्यथा ने पर्पल रंग का शर्ट पहना हुआ है।

दिखाए गए शादी में एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है।

जिसमें हिंदी उर्दू एवम् इन्लिश में लातेहार लिखा गया हैं।